इस चित्र में हम एक रेस्टोरेंट देख रहे हैं जहां पर इसका नाम बाहर पर लिखा हुआ है।

हम यहां पर एक मिट्टी का ग्राउंड देख रहे हैं जो कि बहुत ही विशाल है और यहां पर कुछ--

इधर हम एक सरकारी दफ्तर देख रहे हैं जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे अगल बगल में--

दिए गए चित्र में हमें यहां पर स्कूटी की मुरम्मत करता हुआ एक मैकेनिक नजर आ रहा है।